यहां पे एक बहोत बड़ा तलाब है।

और तालाब में पानी नजर आ रहा है और बगल में बहोत सारे पेड़ पौधा हैं।

और बाहर में एक खिड़की नजर आ रहा है।

हॉल सीट भी है अ रुम बहुत अच्छा और बड़ा लग रहा--

और बहोत सारा पेड़ पौधा अगल बगल घर के बाहर है।

हम लोग देख सकते है कि घर एक बहोत बड़ा रुम है।

एक बहुत बड़ा घर है और घर में लैपटॉप --

और खाना खाने वाला सॉस भी रखा हुआ है टेबल पे।

और इसमें रखा हुआ है लाइट बत्ती सब है।

और काम करने वाला भी है और दुकान जैसा दिखाई दे रहा--

एक घर है घर के बगल में बहोत सारा पेड़ पौधा है।

और एक आदमी खड़ा है वहां पे।

पंखा का समान मिल रहा है और ए_सी वेसी सब है इसमें।

यहां पे एक रूम है और रूम में बहोत सारा--

आदमी है और एक बैग रखा हुआ है और किताब है किताब में चित्र बना हुआ है।

और इसमें काउन दुकान का काउंटर जैसा लग रहा है।

यहां पे बहोत सारा शिशा का कप रखा हुआ है।

और एक बहोत बड़ा दुकान जैसा दिखाई दे रहा है।

हर रूम में पर्दा भी है और--

अह रोड पे खड़ा है और बगल में एक बहुत बड़ा मकान है जिसका शटर डाउन है उसका रंग--

यहां पे फल वाला दुकान है और एक--

केला भी है और उसके ऊपर रखा हुआ है।